पीले रंग का स्टार लगा हुआ है हर चार लगे हुए है आसमान है बहुत अच्छा स्टॅन्ड लगाया हुआ है।

हमे बताया जा रहा है ये एक बाल कट की दूकान है जहा पर दो बच्छे अपने बाल कटवा रहे है बच्चा बैठा हुआ है जिस एक और एक बच्चा--

इस चित्र में दिखाया जा रहा है एक ये खुला मैदान है जहां बत्ती तीन बच्चे भाग रहै हैं पर्वत दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा है रोशनी है वहां पर--

क आदमी आदमी के बाल काट रहा है। जहा पर आइना दिखाई दे रहा है। टी_वी दिखाई दे रहा है। कुर्सियां दिखाई दे रही है।

एक आदमी बैठा हुआ है और आसपास बहुत झाड़ा भी है।